जो जिसमें बॉटल्स एल्यूमिनियम स्टील --

प्रैक्टिशनर है उसने एक टोपी और ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है चारों तरफ जो वॉल है वो ग्रीन कलर के हैं।

टेबल रखे गए हैं जिस पे आदमी बैठ सकता है ऊपर पूरी लाइटिंग की गई है।

इस पिक्चर में हम एक मैरिज हॉल के एंट्री गेट देख सकते हैं जो कि ग्रीन --